ये किसी का रूम का बालकनी लग रहा है जहां पे आगे की तरह--

आ कुछ पेड़ रखकर उसको सजाया गया है ।

अ ये किसी तरह पार्क जैसे लग रहा है जिसमें टूरिस्ट प्लेस एक छोटा सा टूरिस्ट प्लेस लग रहा है।

और अंदर की तरफ भी बहुत सारे पेड़ दिख रहा है और चारों साइड आई थिंक गार्डन वगैरह --

लब बेचे जा रहे हैं यहां पे सारे मछली को साइड करके अच्छे से रखा गया --

ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा है माउंटन का वहां पे कुछ लोग आई थिंक --

कुछ कस्टमर बेटने के लिए एक कुर्सी मतलब सोफा यहाँ पे --

और एक उसका अ कुछ --

प्रोब्लेम के लिये --

जैसे कि लाल कलर सी स्कूटी है यहाँ पर आगे की तरफ कुछ कार और कुछ बाइक ।

यहां पे कुछ खेती का कैनाल जैसे लग रहा है जहां पे --

क्या है जहां पे पानी है इसमें इस पानी में --